और यहां पे भी कोई भी अ स्टूडेंट वगैरा कोई नजर नहीं आ रहा है।

अ हेडफोन वगैर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जैसा कि हम इस पिक्चर में जो देख रहे हैं ये शायद कोई शॉप वगैरह है कि या रेस्टोरेंट वगैरह या कैफे वगैरह।

देखने में काफी अच्छा लग रहा है।

यहां का पेट्रोल पंप है यहां पे कई गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रहे हैं और अ--

जैसा की हम इस पिक्चर को देख करके बता सकते हैं।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसके अंदर से फोटो ले गई है एक साइड की स्कूल या कॉलेज की--

पेड़ के ऊपर अ अ उपर चढ़ रहा है इसमें ब्लू पैंट --

सेक्टर फोर्टीन में फोटो लिया गया है जो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।

समारोह वगैरा चल रहा है शायद स्कूल का--

स्कूल की यह पिक्चर है और बच्चे हैं और ड्राइंग का पेपर --

यहां पर जिम वगैरह के सामान वगैरह--

ये बॉर्डर वगैरा एक पे जो फंक्शन होते है--